यहां पर एक रूम ऑफिस दिखाई दे रहा है।

यहां पर इसको बहोत सुन्दर सजाया हुआ दिखाई दे रहा है।

शोरूम में बोहोत सारी लाइटें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं शोरूम की छत ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं शोरूम की छत --

गाड़ी का कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पार्किंग में बहोत सारी बाईकें भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां में दिखाई दे रहा है।

और एक फ्रिज भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

साड़ीयों का कलर येलो दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर कुछ अधिकांश भी दिखाई दे रही है।

मेरे सामने एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे खड़े भी खोदे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मेरे सामने एक रूम दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक हैप्पी बर्थडे का लोगो दिखाई दे रहा है यहां पर लोगो रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर बिल्डिंग का कलर ब्लैक कलर का दिखाई--

इसके ऊपर ये भी एक कमरा बना हुआ दिखाई दे रहा है।